गौशाला बहोत ही अच्छी है गाय माता की सेवा करनी चाइए ।

यह बहोत ही सुंदर लग रही है गाय माता।

यह एक घर है ग्रिल है बहुत ही सुंदर लग रहा है।

पास में एक और घर है यह घर बहोत ही सुंदर है मुझे बहोत ही अच्छा लगा इसके बाहर डोर बेल लगी है।

सभी बच्चे प्रेयर कर रहे हैं आगे उनके सीनियर खड़े हैं।

कुछ घास है चट्टानें दिखाई दे रही हैं।

अलग अलग डिजाइन्स है किसी में ताश के पत्तों जैसा डिजाइन बना हुआ है।

बहोत बड़े बड़े पत्थर हैं चारों तरफ हरियाली है चट्टानें हैं अलग अलग प्रकार के फूल हैं।

बगीचा है खेत है हरियाली है।

यह बहुत बड़ी फैक्ट्री या फॉर्म है और इसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं।

बहुत ही अच्छा स्टेडियम है यह बहुत बड़ा लग रहा है गुमनेड़ा की तरफ ऐसा स्टेडियम है।

पीछे महादेव दुर्गा हनुमान जी सभी का फोटो लगा हुआ--

यहां उनके फोटो क्लिक किया जा रहे हैं और बहोत सारे टीचर्स बैठे हैं।

उसके पास में फ्लैट भी हैं बहोत ही सुंदर नीला आसमान है।

यहां चारों तरफ हरियाली है।